यहां पर बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है यहां पर घास भी लगी है यहां पर जेबरा है जेबरा मे काली और सफेद रंग की धारिया है।

यहाँ पर एक हाथी लेटा हुआ है यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है बाउंड्री के पीछे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर घांस भी दिखाई दे रही है।

बस के बाहर कुछ लोग है जो बस पर चढ़ रहे है कुछ लोग यहां पर बाहर भी खड़े हुए हैं यहां पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।

दुकान के बाहर कट्टों मे बहुत सारा समान रखा हुआ है यहाँ पर आते के कट्टे भी रखे है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए है।

होटल के ऊपर एक होर्डिंग लगा हुआ है होर्डिंग में लाइट जल रही है होटल के अंदर बहुत सारी लाइटे जल रही है होटल के बाहर दो लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर पंखा रखा हुआ है गुफा में लाइट जल रही है।

यहाँ पर टेबलें लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

यहाँ पर एक महिला जाती हुई दिख रही है जिसने मास्क पहना हुआ है।

यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है सड़क के बीचों-बीच डिवाइडर है।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग लाइन बना कर खड़े हुए है बिल्डिंग में खिड़की भी दिखाई दे रही है।